ये एक मच्छी मार्किट है। एक मच्छी मार्केट में बोहोत कई तरीके की मछलियाँ बेची जाती है और ये आंटी कितने सही ढ़ंग से म् --

शादी का स्टेज दिख रहा है जिसमे दूल्हा-दुल्हन बेठे है।

और राइट में एक बंदा अ खाने के लिए एक सामान डलवा रहा है लड़को से खाने के लिए।

कई तरीके के मकान दिखाई दे र रहे है और यहा पे साथ में पेड़ भी की छाव भी दिखाई दे रही है।